कई मशीनें रखी हुई हैं नीचे की तरफ भी कार्टूंस में बहुत सारा सामान रखा हुआ--

और जिन सब गमलों में पौधे लगे है इन सभी में अलग अलग--

अंदर वॉलपेपर लगे हुए हैं ऊपर लाइट है सामने पंखा लगा हुआ है।

रेड और वाइट कलर की है चारों तरफ भी बाउंड्री बनी जो रेड व्हाइट कलर की है और सामने--

यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी है जो व्हाईट और ब्राउन कलर की है और इसमें--

पौधे लगे हैं कुछ पेड़ भी है आस-पास और भी घर बने हुए हैं आसमान नीला और सफ़ेद है बहुत ही सुंदर --

बने हुए हैं जहां से पानी वाटर पार्क में आ रहा हैं गेमिंग है।

कलर का है यहां पर बहोत सारा सामान टंगा है कुछ पोस्टर भी लगे हैं और ऑटो के पा--

और इसके ऊपर बहोत सारे रेड और वाइट कलर के पोस्टर लगे हैं अंदर के तरफ बहोत सारे लोग हैं और कुछ --

घास लगी है सामने की तरफ भी कुछ बड़े पेड़ हैं स्टेट लाइट लगी हुई हैं आगे।

अलग अलग कंटेनर में सेट करके मिठाइयों को रखा गया है।

रोल काटा रखा है एक हरे कलर की बोतल रखी है अलमारियों में भी बहुत सा सामान है।

सारे वायर्स आस पास से गए हुए हैं माउस रखा है दूसरा सामान भी है।